ये एक छोटे छोटे घास भी हैं ।

गेट भी लगी हुई है इसके बगल में --

इ दुकान में तरह-तरह के सामान है।

ई यह अनुमंडल काफी बड़ा है।

यहाँ आदमी भी खड़ा है।

इस मैदान के किनारे बड़े-बड़े पेड़ भी हैं।

एक टेबुल पर एक बैग --

उमे बिछावन नीचे किया गया है।

यहाँ अनेक सारे घर हैं यहाँ पर एक घर में --

जो छल्ली बना के रखे गए हैं।

यहाँ छोटे-छोटे झाड़ी भी हैं।

इस गेट के दोनों तरफ --